एक मिशन के बारे में समझाया जा रहा है।

इस चित्र में एक ज़ू पार नजर आ रहा है उसके अंदर जानवर दिख राहा है।

इस चित्र में एक पुराना सा घर नजर आ रहा है उस घर कने एक तीन-चार लोग थेरेवे है और एक कचरे का डब्बा है और ए_सी भी लगेवा है।

इस चित्र मे एक पुराना मंदिर नजर आ रहा है ऊस मंदिर के बाहर और गाड़िया और कार ठहरे सो है और झाड़ा भी है आस पास ।